यहां पूरा लाइट लगाया हुआ है बहुत सारा बल्ब लगाया हुआ है वो शीशा है।

यह एक झोपड़ी बना हुआ है ऊपर से पुवाली या कुछ उसको बनाया हुआ है।

और अपना अपना प्रोजेक्ट बना रही है ऊन लेके अअम धागा लेके।

मो पॉलीथिन में भी कुछ रखा हुआ है।

न्यू उधर कोई बिल्डिंग है गवर्मेंट कि बिल्डिंग लग रही है।